लड़के रिक्शा दिख रही है और वहाँ पे एक सामने एक कुर्सी-कुर्सी दिख रही है वॉल कम्पाउन्ड का दीवाल दिख रहा है वहाँ पे कु कुछ सामान पड़ा हुआ बिखरा हुआ दिख रहा है।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

का बना हुआ अ बोर्ड जैसा है। इसपे कुछ ल डिस्क्रिप्शन दिया गया है और वहां पर एक तारों का कंपाउंड है और बड़े- बड़े पेड़ हैं पौधे हैं।

एक घ इमारत दिख रही है और वहा पे अअ कुछ--